ये एक रेलवे प्लेटफार्म का ब्रिज दिखाई दे रहा है जो कि अंडरकंस्ट्र --

इस तस्वीर में देख के ये प्रतीत हो रहा है कि यह एक घर है। यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है और एक --

यह एक ऑफिस है जिसमें कुछ एम्प्लोई --